और यहां पे आप देख सकते हो एक आदमी और खड़ा हुआ है।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

और यहां पे आप देख सकते हो लाइट का भी प्रबंध है यहां पे चारो तरफ--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

यहां पे आप देख सकते हो ये बहुत सारे आदमी हैं।

बहुत सारी बिल्डिंग बने हुए हैं और यहां पे देख सकते हो तारें तार लगी हुई हैं।

और यहां पे दिख रही है।

यहां पे आप देख सकते हो लाइट की भी--

और यहां पे ये औरते भी हैं आदमी भी हैं बच्चे भी हैं यहां पे तरह के --

और यहां पे नेट भी दिख रहा है। जाल लगा हुआ है यहां पे।

और यहां पे आप देख सकते हो चारों तरफ है।

हेयर मास्टर लिखा हुआ है लग्जरी जे सैलून लिखा हुआ है यहां पे आप देख सकते हो ये आसमान भी दिख रहा है।

और यहा पे गुलाबी रंग के भी है यहां पे आप देख सकते हो--

और यहां पर आप दे सकते हो चारों तरफ से--

यहां पे डेयरी मिल्क है यहां किराना--

बहोत अच्छ बहोत अच्छी-अच्छी चीज दिख रही हैं यहां पे खाने पीने की चीज रखी हुई है यहां पे आप देख सकते है बहुत अच्छा लग --

यहां पे आप देख सकते हो इंडियन ऑयल लिखा हुआ है।